यहाँ बहुत सारी बसे लगी हुई है बसे पीले रंग की है| यहाँ एक गाड़ी भी लगी हुई है।

यह एक एस.बी.आई. ए.टी.एम. है ए.टी.एम. की छत करकट की है ए.टी.एम. के बाहर बहुत सारे लोग लगे हुए है।

यह एक करकट का बना हुआ गोदाम है। यहाँ बहोत सारे मजदूर हैं।

यह एक रेलवे स्टेशन का प्लेटफार्म है। यह एक सुधा पार्लर की दुकान है।